इन दोरो पर एक जीप खड़ी है तथा--

जिसमें बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है जिसमें कुछ सचौटी सामान--

सिटी नजर आ रही है सामने से कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तथा कुछ अपना नाश्ता कर रहे हैं।